यहाँ पे दो से तीन गो आदमी खड़े है।

और लिखा हुआ है सन्नी डेयरी ।

मंदील है मंदील का बाहर ढेर सा आदमी--